ग्रीन जैकेट में ओ कुछ खा रही है और वहां पर एक फोटो खींचना खिंचाने के लिए आक्रक्षत--

मिट्टी के बर्तन भी दिख रहे हैं आसपास पेड़ पौधे भी दिख रहे हैं और कुछ लोग भी दिख रहे हैं।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

ये एक सड़क दिखाई दे रही है सड़क पे कुछ लोग दिख रहे।

कुछ फोटो भी दिख रही है फूल की माला भी दिख रही--

और बहोत सारा सामान भी दिख रहा है आसपास पेड़ पौधे भी दिख रहे हैं।

टेबल में कुर्सी भी दिख रही है मुझे कुछ लाइट भी दिखाई दे रही है।

पानी की बॉटल भी दिख रही है टेबल व कुर्सी भी दिख रही--

मुझे एक जंगल दिखाई दे रहा--

घास भी दिख रही है मुझे कुछ हिरण भी दिख रहे हैं।

कुछ साइकल भी दिख रहे हैं मुझे टेंट भी दिख रहा है पेड़ पौधे भी देख रहे हैं।

मुझे एक दुकान दिखाई दे रही है।

और कुछ चेयर भी दिख रही है टेबल भी दिखाई दे रही है।